यहां पर एक बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है घर के ऊपर आगे एक गणेश भगवान जी की मूर्ति चिपकाई हुई है ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ए_सी लगी हुई है।

इस टेंट के इधर साइड एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है वो भी ग्रीन कलर का है।

सर पे एक येल्लो कलर की कैप डाली हुई है पीछे खिड़किया हैं।

और कुछ छोटी छोटी तस्वीरें है कुछ चार्ट बने हुए हैं जो यहां पर रखे हुए हैं।

लगे हुए हैं और सामने बहुत सारा समान है नीचे भी कुछ फर्नीचर लगे हुए हैं एक बहुत बड़ा पैकेट पड़ा है जो ऊपर से खुला हुआ है।

नीचे कुछ कट्टे बोरिया पड़ी है बर्तन धोने वाले जाली पड़ी है वेदी के पाउच है हल्दी धनिया मिर्ची के पाउच भी है।

कुछ लड़कियों के सफेद कपड़े पहने हुए है एक महिला के लाल ड्रेस पहनी हुई है।

गेंद पड़ी है और सामने इधर कुर्सियों के ऊपर दीवार के ऊपर कुछ बनाया हुआ है ड्रा ड्राइंग

यहां पर सामने एक दुकान बनी हुई है। दुकान के अंदर एक आदमी बैठा है।

यहां पर एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पे एक आदमी जारहा है पीछे बैक ब्लैक कलर का बैग डाला हुआ है।

इस टेबल के ऊपर ये सैंडल पड़ा है और पीछे कुछ डिब्बे पड़े हैं डिब्बों के अंदर चॉकलेट वगैरह रखी हुई है कुछ प्लास्टिक पॉलीथिन है।